यहां पे आदमी भी बैठे हुए हैं।

बहुत सुंदर लड़का दिखाई दे रहा है।

और यहां सी पत्थर से की बनी हुई है।

यहां बहोत सारे आदमी खड़े हैं।

और चावल चीनी सारा सामान मॉल में मिलता है।

बहोत बड़े बड़े फ्लैट से नजर आ रहे हैं।

यह बहोत बड़ी कंपनी नजर आ रही है।

बड़े बड़े पेड़ भी दिखाई दे रहे हैं।

यहां बहोत बड़ा ग्राउंड सा दिखाई--

बहोत सारी मिट्टी मिट्टी गिरी पड़ी है और--

अलमारियों में जचा रखे खानो में--

और बहोत बड़े बड़े बोरड भी लगे हुए है।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

यहां मेज कुर्सी भी बिछी हुई है।